जो की बहोत बढ़िया लग रहा है उसपे लिखा हुआ है इ-व्हीकल टनवाल इ-व्हीकल लिख रखा है बोर्ड पे।

ये बोर्ड लग रखा है उस पे लिख रखा है एस_पी मेडिकल कॉलेज यानी ये मेडिकल कॉलेज है उसके तीन गेट हैं।

ये एक मोर की तस्वीर है जिसके अपने पंख पूरे तरह से खोल रखे है।

अलग अलग कप्स है येल्लो कलर के ग्रीन कलर के व्हाइट कलर के--

और मंदिर के पीछे एक पेड़ नज़र आ रहा--

ये फोर जी लिख रखा है इधर साइड में और ये कांच से भरा हुआ है और शोरूम के बाहर सीढ़ियां लग रखी है।

भगवान की चीज है। यहां पे एक माइक लग रखा है और एक टेबल सी थोड़ी छोटी लगा रखी है उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का कपड़ा और एक --

ये माहेश्वरी नाम से फिल्टर एंड कोल्ड वाटर की शॉप भी है और माहेश्वरी प्लास्टिक नाम की भी एक शॉप है।

यहां पे बहुत सारी कारें खड़ी हैं यह थोड़ी छोटी जगह है और इधर चार कारें खड़ी है।

बहुत सारे हार सेट हैं इधर जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं।

यहां तीन चार लोग खड़े हैं दो की है जाकेट पहन रखी है एक अंकल ने ब्लैक कलर की जैकेट और वाइट पैंट --

यहां पे बहोत सारी कारें खड़ी है कोई व्हाइट कलर की कोई ब्लैक तो कोई ग्रे --

यहां पे दो वकती पानी के अंदर--